नीचे है। सीमेंट से बनी सड़क पर रखे हुए हैं। कुछ सड़क खुदरी हुई है और वहाँ से पानी भी बह --

चार मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसमें छोटे सर्किट लारी वाली सर्किट से डेकोरेशन किया गया है।

सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिस पे बस चल रही है एक टेम्पो दिखाई दे रहा है नीले कलर की एक मशीन रखी --

अपने काम में व्यस्त पीली शर्ट में हेलमेट लगाये एक लड़का जा रहा है। एक फ़ोन पर बात कर रहा है। एक --